घर सा है और यहां पर एक लाल से कलर का टेक्टर है और उस पर आदमी--

और उसपे एक आदमी बैठा है और बराबर में--

रेंजर साइकल और बडी साइकल और यहां पर छोटी साइकल है।

यहां पर बहुत अच्छी बराबर में सड़क जा रही है और--

और यहां पर एक झोपड़ी सी बनी यहाँ पर है। टीन गिर रही है और शीशा में गेट सा लग रहा है।

यहां पर एक सुरंग सी--

मंदिर सा और सुरंग है बहुत अच्छी यहां पर।

यहां पर बहुत बड़े जो हैं वो रोड ऐसे पड़े हैं।

पत्थर से उधर है बहुत सारे तीन चार पत्थर से और एक यहां पर बहुत बड़ा पत्थर है।

और यहां पर एक बराबर में पेड़ पौधे हैं पर बहुत अच्छे और पुराने पेड़ से है यहां पर।

पेड़ पौधे हो रहे हैं। यहां पर बराबर में एक कार सी जा रहे हैं और यहां पर बहुत सारा बाजार है और बाजार में टेंपो से खडे हैं और यहां पर --

ऊपर हुई हैं यहां पर एक कैमरा सा लग रहा ।

अव खंबा सा यहां पर।

और बहुत अच्छी बिल्डिंग --

यहां पर एक पार्क है पार्क में आदमी खड़े हैं यहाँ पर बहुत सा--

और यहां पर मिट्टी चाहिए बराबर में।

यहां पर एक गैस सुई की पाइप रख--

और यहां पर गैस भरने के वो है।

और यहां पर फुलझड़ी सी है और ऊपर यहां पर बहोत सारी भीड़ सी हो रही है।

एक तस्वीर सी समय लग रही--

यहां पर एक जिम है जिम में यहां पर बहुत अच्छी अच्छी मशीन रखे है और लाइट लग रही--

और यहां पर शीशे विशे लग रहे और यहां पर डम्बल वम्बल से रखे है।

ऊपर शीशे लग रहा है सामने--

यहां पर बहुत काला सा एक शीशा सा रखा है और यहां पर एक बराबर में--

ट्रैक्टर पर ऊपर छतरी है यहां पर।

एक ट्रॉली सा और एक ट्रैक्टर सा है और यहां पर --

पानी भर रहा है खेत में और यहां पर बहुत अच्छे ईख सा है बराबर में और यहां पर पेड़ पौधे यहाँ पर और खेत है बहुत बडा और यहां पर चट्टान सी है बरबर में।

बहुत सारी कुर्सी बीछ रही हैं और यहां पर पति गणेश जी रखा हुआ है।

एक डिब्बे से में प्लास्टिक के कुछ रखे हुए--

यहां पर सील बंद डिब्बे--

और यहां पर बहुत अच्छी दुकान है और दुकान के बराबर में डिब्बे से में कुछ रखे है।

यहां पर एक मुरब्बा में --

यहां पर बहुत अच्छा मशीन है वो सिलाई मशीन है और यहां पे लीले कलर की मशीन --

मशीन के बोर्ड वोर्ड से लग रहे हैं यहां पर।